koha interface में how to add an item type पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम item types के बारे में और item type जोड़ना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux operating system 1604 और koha version 1605
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थी को library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha में admin access भी होना चाहिए यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
चलो शुरू करें मैं koha interface पर जाती हूँ
याद रखें कि हमने एक superlibrarian bella बनाया था
अब हम यूजरनेम bella और उसके password से login करेंगे
अब हम koha interface superlibrarian bella में है
आगे बढ़ने से पहले पहले समझते हैं कि item types क्या हैं
item types आमतौर पर library में सामग्री का संदर्भ देता है जैसे कि
koha में प्रत्येक item type को collection code दिया गया है
यह code विशिष्ट रूप से item type की पहचान करता है
एक नया item type जोड़ना सीखते हैं
koha home page पर koha administration पर click करें
basic parameters section पर जाएँ और item types पर click करें
item types administration पेज के ऊपर new item type button पर click करें
item type field में नएँ item type के लिए code प्रविष्ट करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं
मैं ref type करुँगी
description field item type का वर्णन है
तो यहां मैं संदर्भ type करुँगी मैं search category field को skip करुँगी
अगला choose an icon है
bridge टैब पर click करें
यहाँ नीचे दिए गए विकल्पों से icon पर click करें जो item type से जुड़े हैं
मैं reference icon पर क्लिक करुँगी
इसके बाद हम सीखेंगे कि hide in opac: कैसे मदद करता है
मान लें कि एक पुस्तक क्षतिग्रस्त है और/या बाइंडिग के लिए वापस रखी जानी है
ऐसे मामलों में विकल्प hide in opac सभी यूजर्स के लिए पुस्तक अदृश्य कर देगा
अपनी आवश्यकता के अनुसार hide in opac के लिए checkbox को check या अनचेक करें: मैं checkbox को खाली छोड़ दूंगी
ऐसे items के लिए not for loan option का उपयोग करें जो library में रखे जाते हैं लेकिन circulated नहीं होते हैं
उदाहरण के लिए : reference books rare books dictionary आदि
मैं इस चैकबॉक्स को खाली छोड़ दूंगी
यदि आप चाहें तो rental charge field में charged होने वाली राशि प्रविष्ट कर सकते हैं
मैं कोई शुल्क नहीं डालूंगी क्योंकि ज्यादातर items पर किराया शुल्क लेने की आवश्यकता नहीं है
यदि आप शुल्क दर्ज करना चाहते हैं तो याद रखें कि केवल वैध number दर्ज करें
अगला checkin message: टैक्स्ट field है
checkin message विशेष item के प्रकार पर निर्भर करता है
options हो सकते हैंbook serial cds/dvds bound volume microfilm आदि
checkin message: field में मैं bound volume type करुँगी
इसके बाद checkin message type है
item type के आधार पर item के लिए message या alert का चयन करें
चयनित विकल्प के अनुसार याद रखें कि संदेश या alert तब प्रदर्शित किया जाएगा जब इस विशेष item के लिए checkइन करते हैं
मैं message चुनूँगी
अगला sip media type है sip media type केवल तभी लागू होता है जब आपकी लाइब्रेरी में सॉर्टर या लॉकर सुविधा का उपयोग किया जा रहा हो
तो मैं यहाँ sip media type sip कर रही हूँ
summary field में यदि आप चाहते हैं तो संबंधित item का सारांश लिखें
मैं type करुँगीitem typereference
अंत में save changes button पर click करें
एक नया पेज item types administration खुलता है
all item type के लिए भरे all सभी विवरण item types administration पेज पर एक सारणीबद्ध रूप में प्रदर्शित होते हैं
ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं
item types के लिए असाइन किया गया collection codes संपादित नहीं किया जा सकता है
item type का विवरण संपादित किया जा सकता है एक बार library में items द्वारा item type का उपयोग किया जाता है तो इसे हटाया नहीं जा सकता है
इसी के साथ tutorial के अंत में पहुँचते हैं
संक्षेप में
नियतकार्य के रूप में अपने library के लिए एक नया item book और serial जोड़ें
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में timed के साथ अपने प्रश्न को post करें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
यह ट्यूटोरियल विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद